और ये पन्नी में कुछ रखा हुआ है। बहोत सारी हर कलर की किताबे रखी हुई है।

नीचे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है सीढ़ी पे येलो कलर का अंदर पुताई हुई है और बाहर से यह गुलाबी गुलाबी पिंक पिंक टाइप का पुता है।

दिवाल में अलग अलग कलर की पेंटिंग है एक जगह गुलाबी है एक जगह एक येलो बल्ब दिखाई दे रहा है।

जंगल में भालू टाईप भालू दिखाई दे रहा है इसके पीछे एक बहुत सारे तीन ठे चक्के रखे हुए है गाड़ी के।

दो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और साइड में ऐसा कुछ बॉक्स टाइप का रखे हुए हैं स्टैंड टाइप का रखा हुआ है।

ऐसा लग रहा है जैसे शादी हो रही है या पूजा हो रही है क्योंकि पंडित भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लेडिस भी हैं आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

किसी शो शोरूम में रहता है जैसे दुकान ऐसा है।

फ्लाइट दिखाई दे रही है और कपड़े की दुकान ऐसा लग रहा शॉप दिख रही है बहोत सारे कपड़े हैं।

ये एक पैथोलॉजी दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां जो बोर्ड लगे हुए हैं वह दांतों का ही दिखाई दे रहा है इसमें दो डॉक्टर बने हुए हैं डेंटिस्ट और इसमें नाम भी लिखा हुआ है डॉक्टर का डॉक्टर अतुल तिवारी।

फूल की माला ऐसे ऊपर टंगी हुईं हैं सामने गाड़ी खड़ी है तो उसका आईना दिखाई दे रहा हैं एक गेट भी है सामने इधर बगल से।

बोर्ड लगे हुए है और सामने फा टेबल पे कुछ फाइल वगेरह भी रखी हुई दिखाई दे रही--

कूलर भी दिखाई दे रहा है चबूतरा बना हुआ है छोटी-छोटी दो सीढ़ियां बनी हुई हैं।

खूब सारे पत्थर ही पत्थर है बने हुए जहा पानी नीचे ऊपर साइड देखो तो जो बना हुआ है खूब सारे पत्थर ही पत्थर नजर आ र --

और साइड में ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइट वाइट की रोशनी पीछे तक जा रही--

चारों तरफ हरा भरा जंगल सा पेड़ है पेड़ दिख रहा है।

ऊपर आसमान भी दिख रहा है। बहोत सारे लोग खड़े हुए है और नदी भी दिख रही है।

और पीछे गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है अंधेरा है रात का समय है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बिजली के तार भी ऊपर से जाते हुए नजर आ रहे हैं।

ऐसा लग रहा है लाइट भी जल रही हैं सामने सामने और यहां पे किनारे पे कुछ बना हुआ है।

सामने से एक दरवाजा जैसा दिख रहा है नीचे फर्श दिख रही है।

यहां देखने पर ऐसा लग रहा है की डेकोरेशन हुई है जैसे की कोई प्रोग्राम होने वाला हो--

यहां शादी हो रही है ऐसा लग रहा है बहोत सारे फोटोग्राफर है बहोत सारे लोग हैं डेकोरेशन है।

फर्श दिख रहा है बाउंड्री दिख रही है इस पिक्चर की बहोत सारी पिक्चर नजर आ रही है देखने पर ऐसा लग रहा है किसी मूवी का है।